यह एक आदमी ने सेल्फ़ी ली गई है यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हैं बाहर ये पहाड़ों का नजारा देखने गया है जहाँ पे बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है जो की बंद है।

यह फोटो एक बैंक की बाहर से ली गई है जिसमे एस.बी.आई. के बैंक के पोस्टर लगे हुए है बाहर पाँच छे गाड़िया खड़ी हुई है एक जीप खड़ी हुई है एक लेडी अंदर है एक बच्चा है दो ल-ल-लोग खड़े हुए है।

ऊपर कुछ डी.टी.एच. लगी हुई है पीछे एक बिजली का खंभा है जो सिल्वर कलर का है पीछे कुछ पेड़ है इनकी हरी-हरी पत्तियां है पत्तियों --

यह एक स्कूल है आंगनवाड़ी है जिसमें दो टीचर खड़ी हुई हैं जिन्होंने साड़ी पहन रखी है एक ने पीली और एक ने गुलाबी साड़ी पहन रखी --

यह कोई सरकारी कार्यालय है जहां पर कुछ पुलिस वाले और कुछ लोग खड़े हुए हैं। सब ने पीछे हाथ बांध रखे हैं।

यह एक गार्डन की फोटो ली गई है जो की दिन में ली गई है नीचे बहोत सारी हरीयाली है बहोत सारे बच्चे खेल रहे हैं कुछ जगह पानी भरा हुआ है जहाँ पर कुछ रिसक पट्टी पे बच्चे पट्टी पे रिसक रहे हैं एक --

बच्चा हाथ डाल रहा है बहोत सारे पाइप लगे हुए हैं ऊपर बिजली के खम्भे हैं जिनपे तार गई हुई है आस-पास बहोत बड़े-बड़े पेड़ हैं जो की हरे हैं।

ये किसी शॉप की तस्वीर है जहां पर सैविंग बनाई जाती है तस्वीर लेने वाले की फोटो दिख रही है कांच में कांच लगा हुआ है अंदर पंखे लगे हुए हैं।

वहाँ पर एक खिड़की है जोकि लगी हुई है और उस पर पर्दा है जो की खुला हुआ है लाइट ऑन है ये सीन रात का है नीचे कुछ मशीनें रखी हुई हैं जिनके खोके रखे हुए हैं कुछ जालियाँ रखी हुई हैं नीचे कारपेट --